यहां कुछ घर के पुरुष की बैठे है। यहां पे बहोत ज्यादा मोटरसाइकलें है और घर बने है उसके आगे टीन पड़ी हुई है |

और यहाँ पे एक दो घर भी साइड में मालूम पड़ रहे हैं और ये बहोत सुंदर बने हुए हैं | यहाँ पे आम के पेड़ --

इस दुकान में सब चीज़ बिकती है। यहाँ यहां से ये दुकान बोहोत ज्यादा भरी मालूम पड़ रही हुई है दूकान दो हैं एक इधर भी है एक उधर भी है।

घर के बाहर बहुत अच्छी फर्श भी पड़ी हुई है और इस घर मे चार पहिये की गाड़ी भी खड़ी हुई है यहाँ से साफ दिखाई पड़ रही --

और ये टमटम के ऊपर पन्नी भी चढ़ी हुई हैं | यहाँ पर नीले कलर का भी टमटम है और लाल कलर का भी टमटम है ऊपर भी बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। ये दुकाने यह बड़ी --

यह एक होटल जैसा लगता है इसमें समोसे मिर्ची चाट पकोड़ी बताशा और चाय कढ़ैया वगेरा रखी हुई है एक मेज भी पड़ी हुई है उसी पे सब रखा हुआ है।

ये एक दुकान है। इस दुकान में तीन चार लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पे मालूम पड़ रहा यहाँ पे एक इंजन भी रखा हुआ है और यहाँ पे एक कुर्सी भी पड़ी हुई है। यहाँ पे तीन दोस्त हैं। हमें लगता है ये दो तीनों दोस्त हैं।